बस एतने बात ब नाय त कोनो दिक्कत नइखे तेलवा महंगा ना एजा हमू भरवावे जैती एजा टेम्पू जा तरिसन ए दादा इ तो बड़ा प्रोग्रेस होईल बा ठीक लगता चल ठीक बा